हेलो दोस्तों फ्रूट है बहुत अच्छा फ्रूट है जेसे सेबअंगूरअनारआमलीचीलीची नहीं क्या बोलते इसको उम अ जो भी है बहुत अच्छा है खाने मे मुजे लगत है मस्त लगता है खाने मे।

आप लोग आइये। क्या कहते हैं पूजा पाठ करने के लिए मिठाई ले जाइये जैसे रक्षाबंधन तैयार में हो मिठाई ले जाइये आप लोग। बोहोत अच्छा सस्ते दामों में मिठाई है। थैंक यू दोस्तों। आइयेगा।